और वो दोनो खाली है और वह रेड कलर के है और दूर में बहुत ही ज्यादा ऊपर बहुत ही सुंदर आसमान नजर आ रहा है और नीचे का जो रास्ता ये थोड़ी खराब और थोड़ी टूटी-फूटी लग रही है और यहाँ पर कोई इंसान नजर नही आ रहा है।

बाकी जो एम्बोरी का काम किया गया है वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर है और देखने मे अच्छी लग रही है यहाँ पे बड़ी-बड़ी गेट है और एक गेट मे ताला भी लगा हुआ है।

एक आदमी नजर आ रहा है जैसे के हम देख पा रहे है आदमी उल्टा सोया हुआ है उसके हाथ मे घड़ी है जो की लेफ्ट-हैन्ड है उसके हाथ मे बहुत ज्यादा अंगूठिया नजर आ रही है उपर कर के सोया है उसके उपेर ब्लैंकेट है ब्लैंकेट के अंदर टोवेल नजर आ रहा है।

और यहा पर सूरज ढल ने की वजह से उतनी ज्यादा रोशनी नहीं है थोड़ी अंधेरी है और उपर एक घर नजर आ रहा है पीछे की तरफ जो थोड़ा सा लील है जो आस-पास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा।

और गेट के साइड पे बहुत सारे बैठने की चेअर्स नज़र आ रही है और एक डेस्क नज़र आ रहा है जो की थोड़ीसी अ खाकी कलर के है नीचे की जो फर्श है वो पुरा ही व्हाइट कलर का है और ऊपर की लाइट पड़ने की वजह से यहाँ पे जो फर्श है वोह बहुत ही ज्यादा चमक रही है।

मुझे बस के अंदर बहुत सारे लोग नजर आ रही है बस का जो टायर है वह ब्लैक कलर की नजर आ रही है और रास्ते में थोड़ी से पौधे लगे हुए है जैसे छोटे-छोटे हैं स्ट्रीट लाइट बहुत ऊंची-ऊंची लगी हुई है।